बहुत सारा पत्तल है दोना है।

और बाजा का बॉक्स है बाहर में बाजा भी रखा हुआ है।

यह एक घर है जिसमें शाइनिंग स्टार लिखा हुआ है।

यहां पे तीन खिड़की दिखाई दे रहा है।

दो-तीन आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यह एक किताब का दुकान है।

में घर है उसका छत नीला कलर का है।

जहां पर बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है।

यहां पर एक फोटो लगा हुआ है उसके नीचे एक बोर्ड है।

अंदर में एक ऐसा विंडो ए_सी लगा हुआ है।

आदमी एक ब्राउन कलर का जूता पहना है।

यहां पर बहुत सारा कपड़ा सूखने दिया गया है।

शिशा का रैक बनाया गया है।

यह एक किताब का दुकान है।